पेड़-पौधा भी है बिल्डिंग भी है उस पीला कलर का सूरज रखा निकला हुआ --

एक पीला कलर का बिल्डिंग है। ये कोचिंग का बोर्ड उर्ड लगा हुआ है और वाइट कलर का आगे में दीवार है।

उधर पेड़-पौधा है कुछ पत्थर पे लिखा भी हुआ है बाहर ठेला लगा हुआ है गेट है घास हैं चारों तरफ।

इधर साइड में कचरा भी बहुत फेका हुआ है और पेड़-पौधा भी ढेर सारा --

फोटो में हम देख रहें है एक बड़ा सा मैरिज हॉल है। पीछे लाइट वाइट से सजाया हुआ है दू दू गो।

ये फोटो में हम देख रहे हैं कुछ कॉपी किताब का दुकान है कुछ लोग खड़ा हो के एक का हाथ में चाबी है कुछ लोग किताब गिन रहा हैं |